लिख के है साइड में और अच्छे पेड़ हैं।

जिसपे एक टेबुल है जिसपे ये गमला है और दो गमले नीचे हैं।

तो दूसरे साइड से भी कुछ बोतलो में भरा है।

ये दो बिल्डिंग है सफेद रंग की और पिलर भी लगाए हुए हैं पिलर्स के गमले हैं और लाइटिंग पोल भी है।

यहाँ पे बाहर बहुत सारे बाइक है और दो बन्दे आपस मे बात कर रहे है दूर से एक बंदा चल रहा है।

अ ये सामान है एक साइड में बोतल है और एक साइड में एक आदमी बैठा है।

ये वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है।

और यहां से भी इसमें पेड़ हैं और साइड में--

यह एक टेबल है जिसमें चार पैलेट हैं बिरयानी के चार चम्मच हैं।

इस चर्च के बाहर बहोत से आदमी हैं बहोत सी औरतें हैं।

और उसके साइड में एक अं पेड़ है।

और जो टेबल है वहां म पे वो काले रंग का है।

और आ इसपे ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है वहां पे खाना पीने की समान भेज रहा है।

और एक बड़ा सा कुछ टे अह टूल जैसा बनाया हुआ है सीमेंट का।

और मो और बाकी ना वहां पे खेल रहे हैं तैर रहे हैं।

ये एक अ गली है आ म घर की जिसमे शीशा लगा हुआ है और शीशे का--

यह एक कपड़ों की दुकान है जिसमें बहुत सारे कपड़े हैं।

और अ इस आसमानी रंग अ वो पानी में अ दिख रहा है।

यहां पे शादी शायद ही है शायद।

और एक आदमी खड़ा है दूर से दो आदमी हैं दो आदमी बैठे हैं।

जिसमें सफेद रंग करके और साइड में लाल रंग करके है छोटे छोटे पेड़ है और गाड़ी है आंगन में जिसकी जिसका दरवाजा खुला है।

यहां पे एक अ बैनर लगा है।

जहां पे अ अर टू एग है और --

बहोत सारी बाइक हैं वहां पे और अ कुछ आदमी चल रहे हैं।

और अ जिसमें गेट भी है जाली है उसमें और इसमें --

हर एक जगह पे अलग अलग ज थोड़े थोड़े लोग बैठे है दो डस्टबिन है और कुछ पेड़ भी है।

ये एक काउंटर है जो सजा हुआ है।

बहुत सारा सामान है लकड़ियों का सामान पड़ा हुआ है।

ये काउंटर है जिसमें लैपटॉप है कुछ कागजात है।

और इस साइड में बहोत सारी कुर्सियां है।

दूर से एक लड़की दिखाई दे रहीं हैं।

और वहां से एक आदमी काम कर रहा है जहां पे खाली-खाली डब्बे हैं।

कुछ सिस्टम है लाइट लाइटिंग का --

ये दरिया है एक साइड में और एक साइड में ये --

जो एक अ दुकान के सामने अपनी--

और यहां से कुर्सियां है बीच में टेबल है।

दो गैस के चूले हैं अवन है सफेद कलर का और इसमें नीचे में अलमारिया है।

साइड में पत्थर लगाए हुए हैं ईंट --

इस पे कपड़ा डाला हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।